पीछे बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे है।

जिसके ऊपर दवाईयां रखी है बॉक्सेस रखे हैं।

ये एक छोटा सा रूम है।

जिसके ऊपर मालाएं रखी हैं और चुंदरी लटकी हुई हैं।

छतो पर लाइन से लाइटे लगी हुई है।

उस पर ज्ञान फ्रेश लिखा हुआ है।

जिसके ऊपर वाले पैनल लगा हुआ है।

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें दो दुकानें लगी हुई है।

जमीनों पर टाइल्स लगे हुए हैं।

व कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

सामने आग जल रही है लकड़ी में।

इसके ऊपर कंप्यूटर रखा है कुछ सामान रखे हैं।

ये एक बड़ा सा आफिस है जिसमें लाइन से मेजे रखी हुई है व्हाइट कलर की।

ये छतें सफेद कलर की हैं और पंखा लगा हुआ है।